वो पड्यो ऐ एक अ बोतल पड़ी है अंडा भी अंडा की क्रेट पड़ी है और टेबल बी है।

अ अ और एक आदमी बैठ्यो है और उपर कट्टो धर राख्यो है नाव के ऊपर पानी के ऊपर तेरन लाग रहियो है।

यहा एक केक दिखाई दे रहा है सफ़ सफ़ेद रंग का और उसपे दिल बने हुवे है दो लाल कलर के है पास में स्कूटी खड़ी हुई है और एक --